यहां पे पीछे एक भैया ने अपनी पिक खींची--

और पीछे की तरफ भी काफी सारी बुक --

और यहां पे पीछे की तरफ दो चाचा--

यहां पे इस पूल को तैयार किया गया है।

यह एक स्कूल की तस्वीर है।

यह एक मशीन की तस्वीरे है।

यहाँ पे काफी तरह की बुक पेनें और काफी तरह का सामान मिलता है।

यह तस्वीर मे दरवाजा ग्रे कलर का बना हुआ हैं और बीच में--

यहाँ पे काफी सारी अलग अलग क्लास की और अलग अलग सब्जेक्ट की--

यहां पे एक लाल कलर का गेट बना हुआ है।

यहां पे ऊपर की तरफ काफी सारे बॉक्स पड़े हुए हैं।

यह एक कैफे की तस्वीर है यह कैफे एक कुछ थीम पे बनाया गया है।

यह एक बच्चों की दुकान--

चर्च के बाहर काफी सारे लोग हैं।

यहां पर एक पीछे की तरफ एक कार खड़ी हुई है।

यह एक दुकान की तस्वीर है यह दुकान गिफ्ट शॉप है।

जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं।